आसमान की और उठ रहें हैं। उसका दृस्य काफी सुन्दर लग रहा है।

इसमें कई गेट दिए गए हैं जिसमें से एक गेट नंबर इस तस्वीर में दिख रहा है।

काफी अच्छे झालर लगाए गए हैं।

जिसमें गेट को बंद कर दिया गया है। उसके अंदर कुछ ईंटें रखें हैं।

यह भगवान की काफी तस्वीरें रखी हैं।

औरत के बगल में एक मोती का--